यहां पर डी_जे सोनू लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर काफी सारे बलून से इसे डेकोरेट किया गया है।

अंदर में काफी सारी लाइटिंग्स लगाई हुई दिख रही है।

गार्डन के साइड में हमें शायद यहां एक मंदिर लग रही है।

हमें यहां तस्वीर में एक दो कैट दिखाई दे रही है।